जैसे मैं देख रहा हूं यहां की फंक्शन बंक्शन चालू हो।

जैसा कि मैं देख रहा हूं कि यहां ये स्कूल नजर में आ रहा है जैसे कोई--

जैसे कि मैं देख रहा हूं यहां कोई दुकान है।

और यह श मेरे हिसाब से कप वगैरह की दुकान है बहोत अच्छी लग रही है।

जैसे मैं देख रहा हूं ये जास जैसे सादी का महोत्सव चालू हुआ हो। यहां फन्सम हुआ यहां बाकी सजावट बहोत अच्छी हुई हो।

जैसे कि मैं देख रहा हूं यहां प्लाटिंग व्लाटिंग हुई हो खेत वगैरा हरे भरे जैसे कुछ लगा हुआ हो डाबा नजर में आ रहा है पेड़ हरा भरा नजर में आ रहा है।

और बाउंड्री भीं उसमें जैसे खंभे वगैरा लगे हुए हो।

औल बैन मारुति जैसे खड़ी हुई है।

और बुलेरो जैसे यहां आदमी नजर नहीं आ रहा है और ये लगता है जैसे कारी गार्डन बना हुआ है गार्डन में गाड़ी खड़ी हो रही हो।

ये लग रहा है जैसे ई रिक्शा वगैरह खड़े हुए हैं बसे भी जो खड़ी हुई है।

ये फॉर्म डे जेवरी का दु दुकाने हैं।

तिलक से बुलेट उलट हुआ खड़ी हुई हो मोटरसाइकिल --

मानो यहां गार्डन जैसे लग रहा है लाइटिंग और ये ग गुब्बारे जैसे फूले हुए रखे हो।

ये भैंस वगैरा जो पानी में लो रही है ये मानो--